मस्त चे करवाते साब चीज हे। जैसे कुछ करत

लगा रहली मेला ओला देखाइल अ ओ लाल कुर्सी है। ढेर पोस्टर लगा लौने मिकी माउस लगा ले

यह मंदिर पहियल झ मूर्ति सामने नजर आ रही हे थोडा थोडा सीडी है ऊपर लाईट जलवता मस्त |